और इस टेबल पे एक स्कैनर भी रखा हुआ है।

के पीछे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है।

और भी बहुत प्रकार के सामान--

और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

इस मंदिर के बाहर दो शेर के मूर्तियां बनाकर रखा हुआ है।

घर के बगल में और भी घर है।

दरवाजे पे लोहे का गेट लगा हुआ है।

इस घर के बाहर बहुत सारा फ्लावर पॉट रखा हुआ है।

इस बगीचे में हरे भरे छोटे बड़े सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

मशीन के पास में एक डंडा में एक झंडा लगाया हुआ है।

इस मशीन के अगल बगल घर भी है।

एक फ्लावर पॉट में गुलाब का फूल है जो गुलाबी कलर का है।

यह दुकान का दृश्य है।

वह व्यक्ति व्हाइट कलर का टीशर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ हैं।

उस पोल पर बहोत सारे लोग खड़े हैं।

और इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारा पिलर लगाया हुआ है।

यह एक चर्च का दृश्य है।